टब रखे हुए हैं बोरी के अंदर प्याज र--

चारों ओर लगे हुए हैं और यहां पास बहुत सारे लोग मछली पकड़ रहे हैं यहां पर बहुत सारे टूटे टूटे पहाड़ रखे हुए हैं।

मंदिर के ऊपर बहोत सारे झंडे लगाए गए हैं और यहां पास लोहे की जाली लगी--

हेल्मेट रखा हुआ है यहां बस बहोत सारी बाइक खड़ी हुई हैं चारों ओर कैमरे और लाइट लगे हुए हैं यहां पर बहोत सी दुकाने बनी हुई है साथ में यहां कुछ लोग बैठे हुए हैं।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और एक--

यहां बस कुछ लोग बैठे हुए हैं यहां पर एक छोटासा तालाब बना हुआ हैं तालाब के पास में कुछ लोग खड़े हुए हैं यहां पर बहोत सी दुकानें बनी हुईं हैं।

यहां पर लोहे की जाली लगायी गई है शटर लगी हुई है और यहां प छे--

यहां पास एक इंसान सबको फोटो खिंच रहा है।

यहां पास एक दुकान के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है और दुकान के अंदर बहोत सारी कुर्सियां--

अलमारियां बनी हुई है अलमारियों के अंदर बहोत सारी बुक्स रखी हुई है। यहां पास कुछ लोग खड़े हुए हैं।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

कानों के पास में एक कार खड़ी हुई है और कार को अच्छी तरीके से फूलों से सजाया गया है यहां पास इसके चारों दरवाजों--

पास बहोत सी दुकानें बनी हुई हैं दुकानों के पास में बड़े बड़े पोस्टर और कैमरे लगे हुए हैं।

यहां पर कुछ लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं और स्विमिंग पूल का कलर नीला कलर का है यहां पर छोटी-छोटी कुर्सियां रखी हुई हैं और छोटे-छोटे गमले रखे हुए हैं।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

यहां पर एक कार खड़ी हुई है और यहां पास बहोत सारे टो--